दिखाई दे रहा है कि तीन व्यक्ति काउंटर पर खड़े हुए हैं क्रमशः एक व्यक्ति सफ़ेद एवं काले रंग का कपड़ा पेहना है।